और यहां पर एक बीच में पानी की पाइप है साइड में बहोत बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं।

और गार्डन के बीच के जमीन में बहोत हरी भरी घास लगी हुई है।

और बीच में काफी सारे फूलों के प्लांट्स लगे हुए हैं।

केक रखे हुए हैं लड्डू रखे हैं बेसन रखे हैं मिठाई रखी हुई है और काउंटर पर एक आदमी खड़ा हुआ है जो सीसीटीवी कैमरे को चेक कर रहा है और यहां पर बहुत सारी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं।

यहां पर एक रोड़ को दिखाया गया है एक शहर को दिखाया गया है जहां पर--

समुद्री जहाज जा रही है और यहां आस पास काफी सारे लोग खड़े हुए है किनारे की--

कैमरामैन है और दूल्हा दुल्हन को यहां पर ले जा रहे हैं।

और इनको मैदान में बिठाये गए हैं जिसके ऊपर हरी भरी घास लगी हुई है।

बोर्ड लगा हुआ है और नीचे ए_टी_एम है या बैंक है ऊपर तारें लगी हुई है ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है।

कस्टमर आए हुए है जो इन फूलो को ले रहे हैं और यहां पर काफी ज्यादा मात्रा मे लोगों की --

बाहर वो रोड दिखाया गया है रोड की परछाई दिखाई दे रही है।

बोर्ड दिखाई दे रहा है जिस पे शीशे लगे हुए हैं।

लोगों की बाहर लाइन खड़ी हुई है ए_टी_एम से पैसा निकालने के लिए यहाँ पर एच_डी_एफ_सी ग्रीन कलर में लिखा हुआ है।

यहां ई लकड़ी के टेबल बने हुए हैं जो काफी क्लीन है और काउंटर के ऊपर बहोत सारी लाइटे रखी हुई है जो तीन प्रकार की है जिसमें से येलो और--

यहाँ पर एक बहुत बड़े मैदान को दिखाया गया है जहाँ पर काफी सारे लोग खड़े हुए हैंऔर कुछ लोग नीचे खाना खाने बैठे हुए हैं और यहाँ पर काफी सारे लेडीज हैं लोग हैं।

कुछ लोग यहाँ पर झाड़ू मार रहे हैं कुछ लोग इधर-उधर घूम रहे हैं।

ए ग्रीन कलर की है और आस पास काफी सारे घने पेड़ है और काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग को दिखाए गए है कुछ रेस्टोरेंट को दिखाया गया है।

छत पे हरी कलर की चादरों को लगाया हुआ है और यहाँ पर आसपास झाड़ियाँ है।

और ये सिस्टम पे अपना काम कर रहा है और यहाँ पर बहुत सारी--

एक ने स्कर्ट पहनी हुई है और ऊपर पंख लगे हुए हैं एक रूम में अपना डांस सीख रही है और इन्होंने अपने हाथ को फैला कर रखा हुआ है।

कुछ ठेकेदार हैं जो अभी फोटो लेने के लिए सामने खड़े हैं।

और इनके आसपास काफी बड़ा गांव है और काफी बड़े-बड़े यहाँ पर पेड़ों को--